एक इंसान खड़ा है जिसने नीले रंग का शर्ट पहना हुआ है।

ये फर्श पर टाइल्स लगी हुई है।

उसके ऊपर काले रंग का बोर्ड लगा हुआ है सा--

सबने रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं।

सामने डेस्क का रंग नारंगी और सफेद रंग का नजर आ रहा है।

इसके ऊपर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ है।